ये एक खेत दिखाई दे रहा है। इसके सामने दो घर बने हुए हैं।

इसके ऊपर कई सारे तार लगे हुए है पास मे एक रस्सी बंधी हुई है जिसपे कुछ कपड़े डले हुए है।

और एक घर दिखाई दे रहा है जिस पे एक वाइट कलर की टंकी रखी हुई है।

और ये एक पानी में चल रहा हैं जहां पे कुछ घास है पत्ते हैं पानी है उस मे ये चल रहा है।

ये के बुक शॉप दिखाई दे रही है जिसमें शॉपकीपर बैठे हुए है।